प्राइस की यहाँ पे राखी है जैसा कि हम देख पा रहे हैं।

यहां पर हम देख सकते हैं कि बच्चे गेम खेल रहे हैं।

कार की पार्किंग है जहां पे लोग अपनी कार को पार्क कर रहे हैं। पार्क करने से हमारी जो --

अ गाड़ियां हैं सेफ रहती हैं क्योंकि अगर हम यहाँ वहाँ अ गाड़ी खड़ी कर देंगे। उससे हमारी गाड़ी --

लाइन का पार्टीशन है और यहाँ पे फार्मिंग होती है।

आवाज सुनाई देगी जिससे कि हमारा जो सोसाइटी है --

अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी की घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिसमें कुछ डिजिटल भी होंगी कुछ में कुछ --

इससे हमें प्राप्त होता है कि हमारे जो जिंदगी में --

बट हम देख सकते हैं की यहाँ पर कितना ही भीड़-भाड़ है।

अपने घर में और अपने ऑफिस में यूस करते हुए दिखाई देते हैं।

अपना कार्य प्रतीत करते हैं। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए कु अलग अलग चीजे खरीदने के लिए।

और यहाँ पर एक हल्दीराम का स्टीकर भी देखते भी प्राप्त --

तारे जो हमे जो पैकेजिंग में भी काम आती हैं वो भी रखी गई हैं।

हमें पुलिस चेक कर रहे हैं कि टाइम्ली और सब कुछ पेमेंट करना पा रहे हैं या तो ये लोग कतार में खड़े हैं जहां पर पैसे निकालने के लिए --

जे जो हमें इधर से उधर कम समय मे जाने में --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेरी गो राउन्ड कोई --

अं मेला चल रहा है जहां पे अलग अलग प्रकार के झूले दिख रहे हैं।

जैसा कि वो अपना मेला अपनी फॅमिली और एक फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय --

जैसे कि हम मैं देख हम देख पा रहे हैं। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर लोग अपनी पेट्रोल या गा --

अ में पेट्रोल डलवाने आते है जैसे की हम ट्रक में भी पेट्रोल डलवाते है इससे हमारी जो गाड़ी है --

टेशन जो है इसी लाइब्रेरी से निकाल सकते है और अपने मां बाप का नाम रोशन कर सकते है।

हमे सुख शांति और एवं खुसनसीबी नसीब होती है अगर भगवन जी हमसे प्रसन्न होते है।